इस फोटो में एक नीला और सफेद कलर का गेट लगा हुआ है।

दीवार दिख रही है और दीवार के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है।

और जमीन पर धूप पड़ रही है और दीवार पर कुछ लिखा हुआ है।

और पीछे लाइटिंग लगी हुई है नीचे टाइल लग रही है।

सफेद कलर की मेज रखी हुई है मेज के ऊपर एक फोन का स्टैंड रखा हुआ है।

दूसरी मेज के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है और इसमें एक गमला भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक काले कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

लाल कलर का बॉक्स रखा हुआ है जिसमें शीशा लगा--

और एक लड़का अपने फोन में वीडियो देख रहा है।

और नीचे फर्श पर बहुत सारे बाल पड़े हुए हैं।

मेज के ऊपर एक मारकर रखा हुआ है।

खंबा दिख रहा हैं बहोत सारे पेड़ पौधें दिख रहे है नीचे ग्राउंड में घास दिख रही हैं।

यह दुकान है ऊपर केबिल है पीछे लोहे का खंभा है।

और साइड में एक खंभा दिख रहा है जिस पे ट्रांसफॉरम रखा हुआ है नीचे ईंट बिछी--

छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं एक आदमी साइकल पर आ रहा है।

और उन्होंने साड़ी पहनी रखी है उनकी परछाई भी दिख रही है।

तीन बच्चे बैठे हुए हैं एक औरत बैठी हुई है।

ऊपर बॉक्स लगा हुआ है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

ऊपर एक बलब लगा हुआ है सफेद कलर का।

दो बाल्टी रखी हुई है दो चार बॉक्स रखे हुए हैं।

इस फोटो में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से झरना बह रहा है।

कुछ बड़ी कुछ छोटे यहां पर दो आदमी बैठे हुए हैं।

उनके इस साइड में नीले कलर की पन्नी रखी हुई है और इसमें पानी दिख रहा है।

इसके सामने एक सॉस बोतल और एक कॉफी और एक पानी का गिलास एक जग और कुछ मीनू रखे हुए हैं।

एक मास्टर दिख रहा है शीशा लगा हुआ है।

झूलन पट्टी और लटकने के लिए और खेलने के लिए और लोहे से सामान बनाए गए हैं।

और पीछे घर भी र घर भी है सफेद कलर और नीले कलर के --

और नीचे ग्राउंड में पानी भी खंड रहा है बहोत सारा।

जैसे बॉर्नविटा हिट सैफी और कोलगेट भी रखे हुए हैं।

और लिप्लोज भी है और सफेद कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है इसमें--

और पीछे एक सफेद कलर का घर है उसके ऊपर एक कबूतर पकड़ने का स्टैंड है।

और उसके सामने बोहोत सारे लड़के खड़े हुए हैं जिनमें से एक के हाथ में फोन है।

एक के सर पर गमछा बंधा हुआ है एक ने टोपी ओढ़ रखी है।

इसमें बहोत सारी मशीन रखी हुई है।

वहां पर दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं वहां पर दो मोटरसाइकिल में तेल डाल रहे हैं।

और पत्थर पर सफेद और लाल कलर हो रहा है थोड़ा थोड़ा पीला कलर हो रहा है।